नज़र आ रही है तथा साथ ही में झरना भी जो की सफ़ेद रंग का--

पीछे की तरफ आसमान भी देखा जा सकता है तथा साथ ही में कुछ और पौधे भी नज़र आ रहे है नीचे की तरफ हिरनों का रंग--

हरे-भरे पहाड़ नजर आ रहै हैं जिनके मध्य से एक रास्ता गुजरता हुआ भी नजर आ रहा--

एक मंदिर जो कि सफ़ेद रंग का है तथा आसपास की कुछ इमारते जो कि हरे रंग की है नज़र आ रही है।

शीशे के साथ ही एक पिले रंग की दिवार तथा एक बैंगनी रंग की दिवार --

एक व्यक्ति भी हरे रंग की कमीज तथा लोअर पहने हुए--